एक सामने की ओर एक छोटा मंदिर है जिसके ऊपर इसे दो लाइटे दिखाई दे रही है।

जहाँ सामने पर हमें बर्तन में रखी पीले लड्डू दिखाई दे रहे हैं एवं यहाँ पर अगरबत्ती जली हुई है यह बहुत व्यक्तियों की भीड़ हैं।